इस चित्र मे खाने का एक होटल नजर आ रहा है जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे है।

इस चित्र मे एक बागीचा सा दिखाई दे रहा है जहां पर हरी भरी घास तथा एक व्यक्ति के हाथ मे अमरूद नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक बहुमंजिला भवन नजर आ रहा है।

इस चित्र मे एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है।

इस चित्र में एक खेत में निर्माण का कार्य होता हुआ हेय नजर आ रहा है जहां पर --